दोस्तों और हमारे सामने एक नया दृश्य शूट किया गया है। इस विश्व मे हम देख पा रहे हैं कि एक महिला बैठी है कुर्सी पर काले कलर कि कुर्सी पर। उसने सफेद कलर का टावल पहन रखा है।

नमस्कार दोस्तों हमारे सामने एक नया दृश्य प्रस्तुत किया गया है इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं काफी लोग खड़े है और एक ठो चट्टान के जैसे इलाका है थोड़ा गाँव वाला प्राकृतिक इलाका है।

और अन्य चीजों से छपे हुए एक आदमी खड़ा है अपनी दाढ़ी मूंछ बनवाने के लिए बैठा है वो गमछा लगाये बैठा है उसके बाहर इंतज़ार कर रहे बाहर दो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे है।

नमस्कार हमारे सामने एक नया दृश्य प्रस्तुत किया गया है इस दृश्य में ग्रे कलर का एक लड़के ने शर्ट पहना है और अ-अ शॉर्ट्स पहन के आया है ब्लू कलर के और रेड कारपेट पे खड़ा होके अपना फोटो खींचा रहा है।

नमस्कार दोस्तों हमारे सामने एक नया दृश्य प्रस्तुत किया गया है उस दृश्य में हम देख पा रहें हैं एक लड़का है अपनी बनियान उठा के अपनी बॉडी को अपने फोर पैक एब्स दिखा रहा है उसने फटी हुई ट्रेंडी जिन्स पहनी है उसने बेल्ट भी लगा रखा है उसने यूरो कि चड्डी पहेन रखी है।